ग्राउंड दिखाई दे रहा है ग्राउंड रेसिंग ट्रैक दिखाई दे रहा है यहां पर एक रेड कलर की पटिया भी लगी हुई दिखाई दे रही है यहां पे बहुत सारी ग्रिल भी दिखाई दे रही है।

रोड दिखाई दे रहा है रोड पर पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है।

इसके बाहर एक स्कूटी भी खड़ी हुई दिखाई--

यहां पर कुछ बैठने के लिए बेंच भी दिखाई दे रहे हैं।

लाइट भी दिखाई दे रही है यहां पर शीशे भी दिखाई दे रहे हैं।

मेरे सामने एक कैलाश बूटा उसकी शॉप दिखाई दे रही है यहां पर इसका लोगो व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है यहां पर बहोत सारे तार भी दिखाई दे रहे है।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

हैं यहां पर बहुत सारी बाईकें भी खड़ी हुई दिखाई--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

दिखाई दे रही है झील में बहोत ही बड़ी दिखाई दे रही है झील का पानी काफी शांत दिखाई दे रहा है।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

गार्डन में कुछ झूले भी दिखाई दे रहे हैं गार्डन में कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

मेरे सामने एक स्टोर दिखाई दे रहा हैं स्टोर में बहुत सारा सामान भी दिखाई दे रहा है।

और बहुत सारी मूर्तियां भी लगी हुई दिखाई दे रही है यहां पर अलग अलग मंदिर भी बने हुए दिखाई दे रहे हैं।

और एक बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है। बिल्डिंग के उ--

मेरे सामने एक पार्क दिखाई दे रहा है।

ये रही है जिम बहोत सारा समान भी दिखाई दे रहा है।

यहां पर जिम की मशीनों का कलर ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है।

ऊपर बहोत सारी लाइट भी लगाई हुई दिखाई दे रही है।

यहां पर रिक्शे की छत रेड कलर की दिखाई दे रही है।

यहां पर बहोत सारे शीशे भी लगे हुए दिखाई दे रही हैं।

सारे पेड़ भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं यहां पर बहोत सारी इट भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

यहां पर बहुत सारी बाइक भी खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।